यहां बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं।

अलग अलग कलर रखे हुए हैं।

यह एक बिल्डिंग की तस्वीर है।

यह एक बेडरूम की तस्वीर है।

बेड पर दो पिलो रखे हुए हैं।

जहां एक स्टील की ग्रिल रखी है।

यह एक इवेंट की तस्वीर है।

यह एक जंगल की तस्वीर है।

सामने एक गेट लगा हुआ है।

येहं एक बिल्डिंग की तस्वीर हैं।

आजू बाजू कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है।

यहां बहुत सारा पानी भरा है।

येह एक शॉप की तस्वीर हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर है।

जहां झुके हित का बोर्ड लगा है।

यह एक गार्डन की तस्वीर है।